एक भाग में कुर्सियां और डेस भी रखा हुआ है।

आइसक्रीम दूध वगैरह रखकर है।

यहाँ पर चौदह लड़कियाँ अ लड़कियाँ हैं और एक लड़का खड़ा हुआ है।

आठ लड़कियां बैठकर है साथ--